यह मंदिर बहुत अच्छा है जो कि हनुमान जी का मंदिर है।

यह एक रोड है। इस रोड पे एक ट्रक खड़ा है जिसपे लिखा है भारत पैट्रोलियम ।

जोकि दूल्हे और दुल्हन को माला पहनाने के लिए होती है।

यहां पे कुछ टेबल हैं कुछ सोफे हैं।

और कुछ शैंपू है कुछ खाने की चीज है।

और एक आदमी बैठा है जिसने स्लीपर नहीं पहन रखी--

और बहुत अच्छा दृश्य है जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

और नीचे फरश बिछा रखा है और लाइटिंग जल रही है।

और इसके पीछे दो आदमी बैठे हैं जोकि डॉक्टर हैं।

उसके पास कुछ दवाइयां रखी हैं कुछ आदमी बैठे हैं और पास में फूड सेंटर है।

और इनके ऊपर एक लोहे की एंगल है जो कि इनको छांव दे रही है।

और इसके नीचे एक गंगा बह रही है जो कि देखने में बहुत अच्छी लग रहा है।

पहले गेट में पर्दा लगा हुआ है दूसरे गेट में काउंटर है और तीसरे गेट के पास में बोतल रखी है।

यह एक कॉफी शॉप है इस कॉफी शॉप के अंदर कुछ कुर्सियां रखी है।